आप इस पिक्चर में एक मशीन को देख सकते हैं।

आप इस पिक्चर मे बहोत स--

साथ में यहां पर पत्थरस--